ई ए.टी.एम. हउवे । एजा लोग ए.टी.एम. से आपन पईसा-ओईसा निकाले ले लो और --

चाहे हर चीज में पूज फूल के जरुरत पड़ेला पूजा में चाहे कोनो फंक्शन वैगरह में भी लागेला।